यहां पर हमें लोग हैंड बैग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर पर हमें बहुत सारी मिठाइयां दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें खुज्जियोंके बड़ी बड़ी--

यहां पर हमें एक रेड कलर का फ्लैग भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारी--

देखने पर हमें ये कोई छोटी मोटी दुकान लग रही है।

यहां पर इन्होंने कलरफुल लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया दिखाई दे रहा है।

खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऑरेंज येलो पिंक पर्दो से डेकोरेशन भी की गई दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें जीप कार्स भी दिखाई दे रही हैं।